यहां पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं बहुत सारे यहां पर दीवारों के फैन मिलते हैं।

यहां पे एक कंपनी जिसका नाम है लोनावला वैक्स म्यूजियम यहां पर म्यूजियम है।